बच्चा अपनी इतनी ख़ुशी का बया नही कर सकता और इनता खुश है झूले पर झूलते हुए आप देख स पा रहे है।

और किसी ने उसका फोटो खींचा है पीछे साईड मैदान ऑल नजर आ रहा है पार्किंग और ये पीपल का पेड़ वगेरा वगेरा बोलते है वही है और लोहे का है।